हमें तस्वीर के अंदर बेड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर के अंदर हमें नीले रंग की रोशनी--

और ऊपर शेड डला हुआ दिखाई दे रहा है हमें एक कमरा बना है जिसके ऊपर चादर वाला--

अ टंकी नीली रखी हुई और बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा पाइप हमें दिखाई दे रहा है हरी हरी घास पर फैला हुआ है।

और हमें एक दीवार पर फूल बने हुए और पास में ही कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

और छोटी बच्चियां जो योगा मेट पर बैठकर योगा कर रही हैं।

और एक ये छत बनती हुई दिखाई दे रही है जिसमें लकड़ी की बाउंड्री बनाई गई है इसमें सिमेंट डाली गई है।

और रेत हमें भर भरी हुई दिखाई दे रही है।

तीन आदमी हमें उस पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं छत पे काम करते हुए।

हमें इस तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा है एक --

बड़ा सा गेट बना है ये पीले रंग का और सीढ़ियां बनी हुई नजर आ रही हैं।

हमें एक अलमारी दिखाई दे रही है और भी अलमारियां रखी हुई हैं पीछे ।

अं भ अ रखी हुई दिखाई दे रही है भरी हुई लाइन से--

हमें सड़क दिखाई दे रही है और एक बड़ा सा ट्रक उस पे खड़ा हुआ पे नजर आ रहा है।

हमें तस्वीर के अंदर पहाड़ नजर आ रहा है ।

और तीन बसें हमें इस मैदान खड़ी नजर आ रही है।

एक आदमी बैठा और एक खड़ा नजर आ रहा है।

इस तस्वीर के अंदर हमें एक जगह पर --

पोहा बना हुआ रखा दिखाई दे रहा है एक भगोने के ऊपर और स्टोव जल रहा है।

इस तस्वीर के अंदर हमें नर्सरी के अंदर अह लाइन से जमे हुए हमें टेबलों के ऊपर--

और हमें नीले रंग के बोर्ड पर एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा दिखाई दे रहा है।

फ्लावर पॉट्स बड़े-बड़े गमले जिनमें हरे पौधे लगे हुए हैं।

और हमें झूमर लाइटों वाले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं छत में।

और एक और मूर्ति हमें पास में उसके रखी हुई नजर आ रही है।

और वो आपस में बातें कर रहे हैं और ज्वेलरी रखी हुई हैं।